और एक आदमी बैठा हुआ है और दो तीन आदमी खड़ा है और वहां पर लाइन से जा रहा हैं बिस्कुट--

बाहर में दीवार में छोटा-छोटा पोस्टर लगा हुआ है।

वहां पर एक टेबल बनाओ जिसमें स्टील का टिफिन रखा हुआ है फुल रखा हुआ है और कपड़ा रखा हुआ है।

और राइट साइड में सफेद कलर का दीवार है जिसमें कांच लगा युवा है और वहां पर एक पेड़ है ।

राइट साइड में एक छोटा सा गेट बना हुआ है जिसको फूल से सजाया गया है।

वहां पर बहुत सारा आदमी बैंड बाजा वाला है और बहुत सारा गाड़ी वहां पर खड़ा है।

और राइट साइड में एक नीला कलर का फ्रिज है और वहां पर एक टेबल है लकड़ी का टेबल --

नदी के ऊपर से बहुत सारा चिल्ल उड़ रहा है। और है

एक छोटा सा दुकान है जहां पर चिप्स है।

दुकान के सामने में ही तीन चार आदमी खड़ा है और एक आदमी परांठा बना रहा है।

एक किराना का दुकान है जहां पर एक फ्रिज लगा हुआ है उस फ्रिज में ठंडा है।

एक और बाइक खड़ा हैऔर एक लाल कलर के बाइक पर एक आदमी जा रहा है और आगे में एक ब्लोरो है।

और एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है वहां पर उसके पीछे कर एक मंदिर है और बिल्डिंग में भारत का झंडा लगा हुआ है।

और वहाँ दुकान के अंदर में बाहर में ही फूल टंगा हुआ है राइट साइड में केक कुरकुरे ऐसे ही बहोत चीज टांगा हुआ है।

एक ग्राउंड है जिसके आगे कर बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है उसके राइट साइड में भी बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

ग्राउन में बहुत सारा घाँस उगा हुआ है और साइड साइड में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है।

आगे घर के सामने में ही एक बोलेरो है और इस साइड में भी एक गाड़ी खड़ा है जो की बाइक है।

एक मोबाइल का दुकान है यहां पर बहुत सारा मोबाइल है और चार्जर है।

उसके अंदर में चार काउंटर मोबाइल है और चार्जर है और जिओ का मोबाइल है और नीचे में भी है।

उसके राइट साइड में छोटा छोटा ईंट गड़ा हुआ हैजमीन में जिसे सफेद कलर से पेंट किया गया है।

बहुत बड़ा मंदिर है। राइट साइड में भी दो मंदिर है। लेफ्ट साइड में भी मंदिर है।

यहां पर बहुत सारा मशीन रखा हुआ है चार पांच कुर्सी रखा हुआ है एक लोहा का चारों पट्टी खाटी रखा हुआ है जिसके चारों पट्टी लोहा लगा हुआ है।

और बहुत सारा सब्जी है और वहां पर एक तराजू है।